यहा एक मैदान में कुछ लोग यहा एक मैदान में कुछ लोग योगा कर रहे है।

पिछे बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है। आसमान ब्लू दिखाई दे रहा है।

सा दिखाई दे रहा है चट्टानों के बीच मे कुछ छोटे पेड़ भी उग रहे है और बड़े पेड़--

यहाँ एक बहुत ही बडा हॉल है इसमे बहुत सारी खुर्सिया रखी हुई है खुर्ची मे खुर्ची रखी हुई है।

बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है और भी कुछ दूर हरी हरी उग रही है।